जो लोहे की टीन की बनी हुई है और यहां पे बहुत सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे घर भी दिखाई दे रहा हैं।

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है शो --

दिखाई दे रही है यहां पे टाइल्स दिखाई दे र--

और सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं और हल्का सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं गेंदे के भी फूल दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्टेज दिखाई दे रही है।

और ग्राउंड भी दिखाई दे रही है गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

वहां पे चर्च भी दिखाई दे रही है बहुत सारी चेयर्स भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक बैनर दिखाई दे रहा है।